छोटा-छोटा गाछ दिख रहा है हरा-भरा और ये पूरा सुनसान जग़ह है। इसके बाहर में बहुत सारा मकान है और गाछ उछ है। बिजली का पोल दिख रहा है। फार्म है यही सब है।